गणपति महाराज की एक मूर्ति लगी हुई हैजो की सुन्दर दिखाई दे रही हैऔर फूलो से सजावट की गई है।

जैसे की हम देख सकते है की कुछ डब्बो मे वन टू थ्री लिखा गया है नाइन तक --

कुछ लोग भी नज़र आ रहे है बड़े--

पहली दुकान जैसे की कपड़ो की नजर आ रही है जहाँ पर बहुत सारे कपड़े बाहर की तरफ़ टंगे हुए नज़र आ रहे है।

ऊपर की तरफ बोर्ड लगा गया है जिसमें अंग्रेजी में और हिंदी में यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया लिखा गया नजर --

जो की लाल रंग की दिखाई दे रही है और हम देख सकते--

जैसे के सफ़ेद फूल और लाल फूल या फिर हम देख सकते है पूरा गुलाब का हार नज़र आ रहा है।